का रंग कुछ काला और कुछ भूरे रंग का दिख रहा है।

कुछ खेलने की स्लाइड्स दिख रही हैं और कहीं कहीं हमें पेड़ दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें एक जगह दिखाई गई है यहां पे तीन कुर्सियां रखी हुई है।

एक फ्रिज दिख रहा है जो कि बाटलो से भरा हुआ है।

मंदिर की दीवारों पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ दिख रहा है।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

एक व्यक्ति दिख रहा है जिसका फेस ब्लर दिख रहा है।

के पीछे एक छोटी मूर्ति दिख रही है और एक पंखा दिख रहा है।

दुकान के बगल में हमें एक लाल कलर का बैनर दिख रहा है जिसपे लिखा हुआ है होटल ।

दीवार के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है जिसपे लिखा है ए_टी_एम इंडिया पोस्ट ।

औरत खड़े हुए दिख रही रई है जिनका फेस ब्लर दिख रहा है।

इस दुकान में कई सारे मसाले के पैकेट टंगे हुए दिख रहे तो कई सारे फेविकोल के पैकेट टंगे दिख रहे हैं।

घर के गेट काले शीशे से बने हुए दिख रही हैं।

किसी जाली सी चीज के ऊपर एक व्यक्ति ने अपने हाथ ऊपर खड़े हुए दिख रहा है।

इस दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ दिख रहा है जिसका फेस ब्लर दिख रहा है।

कुर्सी के अगल बगल दो कांच के कबाड़ बने हुए दिख रहे हैं।